यह एक रूम का दृश्य है यहां पर एक चेयर है जो ब्लैक कलर के और गरी ग्रे कलर के हैं।

यहां पर यहां पर टाइल्स के मदद से जमीन भी जमीन में चिपकाए गए हैं।

एवं यहां पे पुजारी भी है जो पूजा कर रहे हैं।

एवं यहां पे ईंटे के भी दिवाले--

यह एक बिल्डिंग का बाहर का दृस्य है ।

यह एक दुकान का दृश्य है यहा पर एक पोस्टर ल लगाए हुए है।

तथा एवं यहां पे एक बहोत बड़ा पोस्टर भी लगे हुए हैं।

तथा तथा यहां पे बहोत सारे साइड में घर भी हैं।

यहां पे बहुत सारे सामान रखे हुवे हैं।

एवं यहां पे बेसिंग भी है।

एवं ये पे बहुत सारे आलमारी भी हैं।

यह एक स्टेशन का दृश्य है जहां पर बहोत से लोग भी हैं।

यहां पर बहुत सारे तार भी लगे हुए हैं।

यह एक फील्ड का दृश्य है यहां पर एक झोपड़ी भी बने हुए हैं।

एवं यहां पर बहुत सारे पहाड़े भी दिख रहे हैं।

जहां पर बहुत से लोग घूमने भी आए हुए हैं।

एवं यहां पर एक कुआं भी है जो ढका हुआ है एवं इस घर का कलर ब्लू है।

यहां पे बहोत सारे तस्वीर भी लगे हुए हैं।

यह एक गार्डन का दृश्य है जहां पर छोटे छोटे घास एवं पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

बहुत सारे गमले में पेड़ भी लगे हुए हैं।

वह पर साइड में एक ब्लैक कलर का गेट भी लगा हुआ है।

यहां पर एक नाव भी है जिस पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

था यहां पर बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

यह एक रूम रूम का गली का दृश्य है जहां पर बहुत सारे रूम भी बने हुए हैं।

यहां पे टाइल्स के मदद से दीवाल में चिपकाए गए हैं तथा यहां पर एक स्विच भी है।

यहां पर एक गर्ल भी खड़ी है जो बच्चे को लिए हुई है।

लड़कियां भी एक तरह तरह के कपड़े पहनी हुई है।

यहां पे छोटे छोटे घास एवं यहां पर बहुत सारे डेकोरेशन किए गए हैं।

तथा यहां पर अह एक प्रिंट पे सी_सी_टी_वी भी लगे हुए हैं।

जहां पर बहोत सारे लोग हैं और सबके मुंह पे ब्लर किए गए हैं।

यहां पर बहुत सारे जिम करने के लिए मशीन भी रखे गए हैं।